inkscape प्रयोग करके create a 3fold brochure पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
* guidelines प्रयोग करना और उन्हें set करना
* 3fold ब्रोशर के लिए settings करना
* 3fold ब्रोशर डिज़ाइन करना
हम layers प्रयोग करने का महत्व भी सीखेंगे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
* ubuntu लिनक्स 1204 os
* inkscape version 0484
यह sample 3fold ब्रोशर है जैसे ही हम इसे खोलते हैं हम 3 folds देख सकते हैं
अतः so मिलाकर 6 भाग हैं
भाग 15 और 6 भाग की तरफ़ है
भाग 23 और 4 ब्रोशर के भीतर की तरफ हैं
अब सीखते हैं कि इस तरह का ब्रोशर कैसे बनाते हैं
inkscape खोलें
file पर click करें और document properties पर जाएँ
अब पहले कुछ बुनियादी सेटिंग करते हैं
* default units को mm में बदलें
* page size को a4 में बदलें
* orientation को landscape में बदलें
* custom size units को mm में बदलें
हमें canvas को 3 folds में विभाजित करना है
उसके लिए देखें कि canvas की विड्थ 297 हो
अतः हमें 297 को 3 भागों में विभाजित करना है जो तीन sections में से प्रत्येक के लिए 99 है
अब document properties dialog box खुलता है
canvas पर बायीं तरफ से guideline पर click करें और खींचे
इस guideline पर double click करें
एक dialog box खुलता है
x की value को 99 करें और ok पर click करें
canvas पर बायीं तरफ से एक अन्य guideline पर click करें और खींचे
dialog box खोलने के लिए इस पर double click करें
यहाँ x की value को 198 करें
अब हमारा canvas तीन बराबर sections में विभाजित हो गया है
ये guidelines दिखाती हैं कि प्रत्येक fold कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म होगा
इस file को दो बार सेव करें:
* एक ब्रोशर की भीतरी side के लिए
* और दूसरा बाहरी side के लिए
file पर जाएँ और save as पर click करें
मैं अपने desktop पर brochureout svg के name से फाइल svg करुँगी
एक बार फिर file पर जाएँ और save as पर click करें
इस समय मैं name दूंगी brochurein svg और save पर click करुँगी
अतः अब हमारे पास 2 files हैं एक भीतरी section के लिए और एक बाहरी section के लिए
अब brochurein svg से शुरू करते हैं
जब हम यह ब्रोशर तैयार करते हैं तब भिन्न elements के लिए भिन्न layers का प्रयोग वांछित है
इस tutorial के अंत में हम ऐसा करने के लाभ देखते हैं
सबसे पहले हम इस ब्रोशर के भीतरी sections को डिज़ाइन करते हैं जोकि 23 और 4 हैं
bezier tool प्रयोग करके canvas के मध्य में एक graphic उदाहरण बनाते हैं इसको नीले से रंग करते हैं
stroke हटायें
एक नयी layer बनाते हैं और अपनी वरीयता के आधार पर name देते हैं
150x150 pixels का एक वृत्त बनाएं
इसे हरा रंग दें
वृत्त की प्रतिलिपि बनाएं और दिखाए गए की तरह भिन्न आकृतियों के 5 और वृत्त बनाएं
दर्शाये गए की तरह उन्हें graphic उदाहरण के चारों तरफ स्थित करें
इन वृत्तों के अंदर हम कुछ images स्थित करेंगे
मैंने images को पहले ही वृर्त्ताकार आकृति में एडिट कर लिया है और उन्हें documents folder में सेव कर लिया है
आपकी सहूलियत के लिए ये images आपको code files link में दी गयी हैं
tutorial को रोकें link पर click करें और इन images को अपनी वरीयता की location पर सेव करें
इसके बाद tutorial को दोबारा चलायें
file पर जाएँ import पर और फिर image1 पर click करें
इसे पहले वृत्त के ऊपर रखें
उसी प्रकार से 5 अन्य images के लिए भी steps दोहराएं
align and distribute विकल्प प्रयोग करके उन्हें अलाइन करें
अब आपका canvas इस तरह दिखना चाहिए
आगे एक नयी layer बनाते हैं
bezier tool चुनें और एक arrow बनाएं
इसे gray रंग दें
stroke हटायें
filters menu पर जाएँ shadows and glows चुनें और फिर drop shadow पर click करें
इफ़ेक्ट को देखने के लिए preview box पर क्लिक करें
अब apply पर click करें dialog box बंद करें
इसे दिखाए गए की तरह ओवरलैप करते हुए पहले वृत्त के ऊपर रखें
2 अधिक arrow बनाने के लिए इस arrow की प्रतिलिपि बनाएं
दिखाए गए की तरह उन्हें क्रमशः दूसरे और तीसरे वृर्त्तों के ऊपर रखें
अब सारे graphic elements हो गए हैं
अब हम सम्बंधित texts को प्रविष्ट करेंगे
नयी layer पर पहले arrow पर type करें introduction
दूसरे arrow पर type करें features
तीसरे arrow पर type करें usage
अब हमें इनमें से प्रत्येक sections के नीचे text प्रविष्ट करना है
libreoffice writer फाइल जो मैंने पहले ही सेव की है मैं उससे texts copy और paste करुँगी
* आपके लिए यह file आपके सेव किये हुए folder में उपलब्ध है
* कृपया इसे स्थित करें और इस से text copy करें
* दिखाए गए की तरह इसे नयी layer पर paste करें
font size को 15 करें और उन्हें text and font विकल्प प्रयोग करके अलाइन करें
ellipse tool प्रयोग करके हल्के हरे रंग का bullet बनाएं
इसे पहले वाक्य के दायीं तरह स्थित करें
सारे वाक्यों के लिए वही प्रक्रिया दोहराएं
अब ब्रोशर का भीतरी भाग तैयार है
अपनी svg file को svg करने के लिए ctrl + s दबाएं
अब आप layers को छुपा या दिखा सकते हैं जैसा आप final ब्रोशर में चाहते हैं
अब उसी file को pdf में सेव करें
file पर जाएँ और save as पर click करें
file extension को pdf में बदलें
save पर click करें
एक नया dialog box दिखता है
* printing के लिए रेज़ोल्यूशन 300 होना चाहिए
* web के लिए यह 72 हो सकता है
अब मैं इसे 300 रखती हूँ
ok पर click करें
अब arrows की opacity बदलते हैं
arrows layer पर जाएँ और layer की opacity को 70 करें
मैंने inkblots के साथ एक नयी layer भी जोड़ ली है
file को svg और pdf formats में svg करें
भिन्नता समझने के लिए 2 pdfs की तुलना करें
आगे ब्रोशर का बाहरी भाग बनाते हैं
file पर जाएँ open पर click करें
brochureout svg चुनें
अब हम पहले चौथे और पांचवें sections डिज़ाइन करते हैं
एक बार फिर भिन्न elements के लिए भिन्न layers प्रयोग करना याद रखें
दिखाए गए की तरह bezier tool प्रयोग करके ऊपरी बायीं तरफ graphic उदाहरण बनाएं
इसे नीला रंग दें stroke को हटायें
spoken tutorial logo import करें जो आपके सेव किये हुए folder में है
size कम करें और इसे पहले section के ऊपरी बाएं कोने पर रखें
spoken tutorial type करें और इसे logo के दायीं तरफ अलाइन करें
font size को 25 में बदलें
text के नीचे एक वृत्त बनाएं और इसमें पीला रंग भरें
inkscape logo import करें
इसे place वृत्त के ऊपर रखें
logo के नीचे type करें inkscape font size को 45 में बदलें
मैंने spoken tutorial project के बारे में विवरण जोड़ लिया है और सम्बंधित logos प्रविष्ट कर लिए हैं
कृपया इसी तरह करें
मैंने निम्न प्रयोग करके सारे elements को अलाइन किया है
* text और font
* और अलाइन और distribute विकल्प
अब ब्रोशर की बाहरी side तैयार है
file पर जाएँ
save as पर क्लिक करें
format को svg में बदलें और save पर click करें
उसी प्रक्रिया को दोहराएं
extension को pdf में बदलें
save पर click करें
यह हमारा सम्पूर्र्ण ब्रोशर है
अगर आपने भिन्न elements के लिए layers उपयोग किया है तो आप रंगों और opacity को आसानी से बदल सकते हैं
ये दो अन्य colour schemes हैं जो मैंने उसी ब्रोशर में बनाई हैं
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
* guidelines प्रयोग करना और उन्हें set करना
* 3fold ब्रोशर के लिए settings करना
* 3fold ब्रोशर डिज़ाइन करना
हमने निम्न भी सीखा
* लेयर्स प्रयोग करने के महत्व
* और उसी ब्रोशर को अनेक colour schemes में प्राप्त करना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
* spoken tutorial project के लिए 3fold ब्रोशर बनाएं
आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें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
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद